और सामने की तरफ एक टावर लगा हुआ है ऊपर आसमान उजला है और मेला बहुत खूबसूरत --

इसमें एक आदमी मंदिल पे खड़ा है और इसके पीछे स्तूप जैसा कुछ बना हुआ है।

यहां पर बोहोत सारे लोग हैं। इसके एक गेट बना हुआ है जिस पे लिखा है वन मंथ इंटरेस्ट फ्री ।